ऐ एक रिक्शे का दुकान दिखाई दे रहा है जिसमें बाहर दो रिक्शें रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

साइड में कुछ लकड़ियां डली हुई हैं कि उस पर कुछ बर्तन रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक बहोत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनी हुई दिखाई दे रही हैं।

दीवाल पर एक वायरिंग का बोर्ड लगा हुआ है और कुछ सीढ़ियां बनी हुई हैं।

यह एक फोटो दिख रही है जिसमें एक टेबल डली हुई है और कुछ कुर्सियां भी डली हुई दिख रही हैं।

एक दरवाजा दिख रहा है। ऊपर दीवाल पर पेंटिंग बनी हुई है।

ट्रेन में लाइट भी लगी हुई है और कुछ पहिए भी लगे हुए दिख रहे हैं। पीछे आसमान भी है।

सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो पेंटिंग बना रहे हैं।